बीचों बीच में दो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

इसमें तरह तरह का अलग अलग कंपनी का मोबाइल बेचे बीचे गए है।

साफ साफ एक जींस भी पहना है और उसके बाद जूता भी पहने हुए है सफेद रंग का।

औरत और एक लड़का जो कि उस तरफ जा रहा है।

में एल_इ_डी लाइट का लाइन लगा हुआ है और ये रु किचन बहुत सफ़ा दिख रहा है।

उसके बगल में तीन लड़का खड़ा हो के पोज दे रहा और एक लड़का--

उनके सेल्फ उसके उनकी फो फोटो ले रहा है।

रॉयल ओक और अंदर की ओर में एक सफेद रंग से पेंट किए गए हैं दीवारों पर और बहुत सारे बलूंस भी सजावट के लिए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा सा खिड़की भी दिखाई दे रहा है दरवाजा भी।

और एक शीशा से बने हुए एक टेबल भी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में तरह तरह के परफ्यूम्स भी दिखाई दे रहा है।

और एक लड़का काले रंग के कपड़े और काले रंग के हाफ पैंट के साथ खड़े होके दिखाई दे रहा है।

और दाएं की ओर कई सारा क्रॉस भी दिखाई दे रहा--

जिसमें दोनों बाएं और दाएं तरफ में काले रंग से पैंट किए गए हैं।

और दो टेबल भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे एक सफेद रंग के हेलमेट भी रखें हुये है।

मुझे इस तस्वीर में छे बुजुर्गों दिखाई दे रहा है जो कि आपस में बात कर रहा है।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

उस दूर तरफ में दायें तरफ में तीन इंसान भी दिखाई दे रहा है और दूर में पहाड़ी भी दिखाई दे --

और और टोपी भी पहने हुए और डॉक्टर--